वो नजर आ रहा है। और निचे मे ए ए येलो और व्हाइट नजर आ रहा है। एक आदमी नजर आ रहा है। आजूबाजू झाडे भी नजर आ रही है।

इमेज में एक प्लेन नजर आ रहा है। जो काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है। नीचे में कुछ लोग दिखाई दे रहे है। जो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे है। सामने में--

कुछ अ आदमी और औरतों के हाथ में बुक और फाइल नजर आ रही है और वह कुछ देखते देख रहे हैं और नीचे में एक डैम दिखाई दे रहा है जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी दिख रहा है।